बहुत से लोग नजर आ रहे है।

और ऊपर गमछा बांधा हुआ रखा गया है।

जा बहुत सारे मशीन जिम करने वाली रखी हुई है।

मैं देख पा रही हूं यह एक बड़ा सा हा--